जो की बहोत सारे बुक को रखा गाया है यहाँ पे एक इंसान है यहाँ पे एक कैलकुलेटर को रखा गया है।

और अच्छा लग रहा है यहा पे एक सीडी है जो की घर पे चड़ने वाला है।

यह एक फैक्ट्री का फोटो है फैक्ट्री मे बहुत सारे लेबर है जो की कार्य कर हरे है यहाँ पे एक बूढ़ा है जो की व्हाइट कलर का है ।

यह एक रूम का फोटो है रूम में दो इंसान है एक इंसान सेल्फी ले लिया है एक इंसान मोबाइल चलरा है यहां पे ब्लू कलर का दिवा लगाया गया है।

यहां पे एक शिशा है शिशा के पीछे जोकि तोलिया पसारा गया है एक अंडरबियर पसारा गया एक रुमाल पसारा गया है।

यहाँ पे दो बाती है दो चमच है दो कप है एक पानी रखा हुआ है एक छिपा में रखा हुआ है जो कि दलबूत रखा हुआ है।

यह एक घर का फोटो है घर जो कि येलो कलर का है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे है यहां पे ऊपर से तार को गुजरा गया है यहां पे एक व्हाईट कलर का पोस्टर टांगा गया है।

इसके आस पास पेड़ पौधे है इस बिल्डिंग पे कुछ लिखा गया है लिमोनो थ्री फिर लिखा गया है।

यहाँ पे आग को जलाया गया हैं एक इन्सान आग को जला रहा हैं जो देखने में खुबसूरत और अच्छा हैं यहाँ पे दो इन्सान बैठे हुए हैं दो इन्सान खड़ा हैं।

यहाँ पे इंसान है जो की ब्लू कलर जीन्स ब्लैक कलर का टीशर्ट पहना हुआ है छा हाथ में लगाया हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारे दिवे को रखा गया है जिसमे पौधा लगाने के लिए यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध का स्टैचू बनाया गया है।

एक लेडिज जोकि बच्चा रखे हुई है यहां पे बहुत सारे मकान हैं यहां पे एक बाइक है बाइक ब्लैक कलर का है जो देखने में खूबसूरत और अच्छा लग रहा है।

यहा पे अलग अलग प्रकार के फुल है यहा पे एक सेर का फोटो है यहा पे वाइट कलर --

इसका गेट जो की शीशा का लगाया गया है रेड व्हाइट कलर का है हीरो साइकिल है जो देखने मे खूबसूरत और अच्छा है।

मकान को ऊपर जो की टी_वि का है एक स्कैनर लगाया गया है यहाँ पे बहुत सारे तार है यहाँ पे एक चिड़ियाँ उड़ रही है ।

यहाँ पे इंसान जो की कार्य कर रहे है यहाँ पर छोटे छोटे गिलास रखा गया है जो देख ने में खूबसूरत है।

जो की वाइट कलर से घर है यहां पे एक गोल बनाया गया है जो है।

यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे है यहाँ पे एक पोल है जिसपे तार गुजारा गया है जो देखने मे खूबसूरत और अच्छा लग रह है।

यहाँ पे एक बच्ची हैं जो की बैट रखे हुए हैं हाथ में येलो कलर का बैट हैं ब्लू कलर का स्वेटर पहने हुआ हैं ब्लैक कलर पेंट पहना हुआ हैं।

यहाँ पे एक पौधा लगाया गया है इसके सामने एक इंसान है उसके सामने फिर एक वाइट कलर की कार है।

यह एक बर्फ का दुकान है बर्फ के दुकान के जो काउंटर बनाया गया है उसमें बर्फ का चित्र उगाया गया है हर एक प्रकार का बर्फ चित्र बनाया गया है।

यहाँ पे बहुत सारे इंसान है यहाँ पे दो फैन लगाए गए है ब्लैक कलर का फैन है यहाँ पर एक इंसान है जो की हाथ में --

यहाँ एक बेर का फोन शॉप है जो देखने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे रेड कलर का दीवा रखा गया है ।